यह एक अ ऑफिस जैसा नजर आ रहा है जो की बाहर एक हेड पम्प है पिंक कलर के गमले लगे हुए है जो की बड़े छोटे हैं।

यह एक रेस्टोरंट है जो की बहुत ही ब्यूटीफुल है ओरेंज कलर के बैकग्राउंड में बना हुआ है जिसमे ब्लैक एंड वाइट कलर की टेबल्स --

इनमे एक तीन मंजिला मल्टी है जिसमे पिंक कलर है और राईट साइड झाड़ है और नीचे ग्रीनरी है फ्लोर पर।

यह एक बिल्डिंग है जो की ओरेंज और ग्रीन कलर की है पिंक कलर के शेड में एक दीवाल है जिसमें बीच में एक बोर्ड लगा हुआ है इस तरफ से कुछ बअ चेक्स में टाइल्स है खुला मैदान है सामने--

यह एक मैदान नजर आ रहा है जो की कोलेज का लग रहा है और उसमे पीले और रेड कलर के चेक्सिस बने हुए है आइट साइड पेड़ लग हुए है और आइट साइड में इमारत खड़ी हुई है जो की तिन मंजिला है।

यह एक दुकान है दुकान मे बहुत सारे खाद्यों पदार्थों के पेकेट्स लटके हुए है एक काउंटर है ओर काउंटर के बाहर एक बोर मे कुछ झाड़ू रखे हुए है।